और यहां पे लोहे का पूल है और जहां पर मुझे बहुत सारे--

और यहां पर मुझे रोड दिखाई दे रहा है रोड पर लाइट।

व मंजिल के ऊपर एक चद्दर चढ़ी हुई है वो मुझे ग्रीन कलर दिख रही है यहां पर।

ऑरेंज पिंक येलो व्हाइट --

पेंट दिखाई दे रहा है और मुझे यहां घड़ी दिखाई दे रही है चिड़िया दिख रहा है।

और रेड कलर है रेड कलर में वाइट में कुछ।

स्टेशन दिखाई दे रही है स्टेशन की मुझे पटली दिखाई दे रही है वो कलर की गट्टी दिखाई दे रही है।

तीन कुर्सियां दिख रही टेबल दिख रहा है बिल्डिंग दिख रही है।

और दो झंडा है। एक रेड कलर एक येलो कलर ग्रीन कलर का--

यहां पर मुझे कुछ --

वाइट कलर और रेड कलर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर लोखा दिख रहा है और।

जा रहे हैं बैग टंगा है उनके पीछे और।

कुछ बना हुआ सर्किल में और उसके अंदर पानी भरा हुआ पानी का मुझे।

वो कलर दिख रहा है और यहां पर मुझे।

ये मुझे अंगूर दिखाई दे रहे वो ब्लैक कलर के हैं कुछ अंगुर मे--

हम रेड कलर की पेन रखी है यहां पे लाइट जल रही है यहां पर बड़े-बड़े आइने लग रहे हैं।

यहां पर मुझे एक रोड दिख रहा है रोड पे कुछ लोग खड़े हुए हैं।